इस चित्र मे बड़ा सा पार्क दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहुत सारी झाड़े है और ऊपर की तरफ़ खुला आसमान है मिट्ठी का मैदान है।

बाहर की तरफ एक बहुत बड़ासा बोर्ड लगा हुआ है सीडीया है बड़े बड़े झाड़ीया है उपर की तरफ खुला आसमान है आसमान का रंग जो है सफेद है।

और लाइटे डाली हुई है काले रंग के गाडी खड़ी हुई है सीढिया है उपर की तरफ खुला आसमान है काले रंग का।

अंदर बहुत बड़ी बड़ी झाड़ीया और एक स्टाचू रखा गया है दिवारो का रंग जो है लाल है।

ऊपर की तरफ खुला आसमान है आसमान का रंग जो है सफ़ेद है और दीवारों का रंग गुलाबी है घास का मैदान है।